इस फोटो में मेरे को एक पक्षी दिखाई दे रहा है जो कि वो पानी के अंदर खड़ा हुआ है।

दस से पन्द्रह खिलाड़ी खड़े है लोग चारों ओर से बोहोत जनता दिखाई दे रही --

कप सा दिखाई दे रहा है और पीछे बले एक शोरूम दिखाई --

ये जिलिस फोटो मेरे जिस कूलर पंखों का शोरूम दिखाई दे रहा है।

बिजली इस फोटो मेरे को एक स्कूल दिखाई दे रही है जो की क्रीम कलर का पेंट किया है बहोत ही शानदार स्कूल है।

मेरा घर बहोत ही अच्छी लग रही है ग्राउंड भी बहोत अच्छा है।

इजली इस फोटो में मेरे को कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और पीछे एक आदमी दिखाई दे रहा है वो कुछ प्रकार भजिए के जैसा है हमारे गांव वाले --